यह संत स्तुति भवन है जो भागलपुर में स्थित है भागलपुर स्टेशन से लगभग --

अनेक तरह के भजन-कीर्तन करते हैं।

भवन काफी पुराना है जो की --

दो के.जी. मीटर अंदर में है।

पूजा अर्चना एव मन्नते मांगने आती है।

एक कपडा मॉल है | यहाँ तरह तरह के कपड़े मिलते हैं | भागलपुर में यह स्थित है | भागलपुर से जस्ट दो तीन किलोमीटर अंदर में है |

यह भागलपुर में स्थित है | यह भागलपुर स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर अंदर में है |

यह एक किराना दुकान है जो भागलपुर में स्थित है भागलपुर से --

स्कूल कलर प्रोजेक्ट रोड ट्रेवल्स आधार कार्ड प्रिंट किया जाता --

किश्त पे ई रिक्शा दिया जाता है जिसका प्रति मंथ --

यह अंग्रेजों द्वारा बनाये गए थे।

जिम सेंटर है जो भागलपुर में है | भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग तीन चार किलोमीटर अंदर में है | यहाँ --

विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था | यह भागलपुर में है |